यहाँ पे मकान है। मकान सब व्हाइट कलर का है। सब है घर है सब --

मतलब सब जगह है। सब अच्छा है सब देखने में अच्छा लगता है। रूम निचे का रूम है सब अच्छे सब लगते हैं सब कुछ देखने में --